यह जिलेबी है जो प्रांत में रखी हुई है।

यहाँ पे ढलाई करने का मशीन भी लगी हुई है यहाँ पे चपार और --

यह एक हवाई अड्डा है यहाँ पेड़-पौधे का रंग हरे-भरे हैं।